और बीज में तीन-चार घंबेले --

ये पेट्रोल टंकी है यहां पे सब गाड़ियां टंकी में तिल डरवाने के लिए आई है पेट्रोल डरवाने के लिए आई है यहां पे --

वो टी-शर्ट और लोअर पहने हुए हैं और पैरों में जूता पहने हुए हैं और--

ज्यादा निकल रहे हैं और उससे कुछ लिखा हुआ है और उसमें वेंस भी बना हुआ है स्वाद की ऊर्जा--

में बैंक के ऊपर बैंक के निशान बने हुए हैं चार नंबर लिखा हुआ है बैंक में कुछ करते लगे हुए हैं।

और गेट लगा हुई है पर खिड़किया लगी लगी हुई है ऊपर लाइटिंग लगी हुई है और लगी हुई है नीचे चेयर पड़े हुए है।

ये एक होटल है होटल बहुत बड़ा है होटल ब्राइट लिखा हुआ है और हड़फसी बैंक भी है।